और आगे जैसे मुझे एक और तालाब दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे एक घर दिख रहा है और घर के नीचे एक गाड़ी भी दिख रही है।

गाय बहुत ही परेशान लगी रही मुझे हे प्रभु इसकी रक्षा करना इसका स्वास्थ्य ठीक रहे ध--

दीवार में लिखा मोबाइल रिपेयरिंग शायद यहां पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी होता होगा।

यहां पर मुझे एक एरोन ट्रेब जिम का एक पोस्टर लगा हुआ है दिख रहा है।

और यहां ये पर मुझे एक गली दिख रही है।

और यहां पर बहुत सारे केक्स --

और यहां पर मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

कुंडी भी दिख रही जिसमें एक कट्स डाल के र--

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और साइड जैसे में एक पेड़ भी बना दी--

जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है और घर के नीचे मुझे दो एक ही कलर के बाइक भी दिख रहे है।

और घर भी यहां पर बना हुआ है और पेड़ पौधे भी आस पास मुझे दिखाई दे--

उपलब्धि होती होगी ना कुछ बोरियों में यहां पर समान इकट्ठा करके रखा हुआ है।

पोट्स की यहां पर मुझे एक दुकान बंद पड़ी हुई भी दिख रही है।